लकड़ी का डोर भी है।

यहां पर मुझे एक ऑफिस टाइप दिख रहा है और इसका जो कलर है वो मुझे येलो दिख रहा है।

और यहां पे एक लेडीज अपने बच्चे को उठाए खड़ी है और साइड में ब्लैक कलर का जो है।

यहाँ पे यह मुझे बड़ा सा हॉल दिख रहा है और जहाँ पे बहुत से लोग हैं और--

ये जिम सा दिखाई दे रहा है और --

वो भी रखा हुआ है और रेड कलर का बॉल है और ब्लू कलर का भी एक बॉल है और --

परे एक अंकल दिखाई दे रहे हैं और जो उन्होंने पेंट और शर्ट पहनी हुई है और यहां पे येलो येलो कुछ दीवार पे है।

ये मुझे एक चिड़िया है और--

और जो कि इधर एक पाइप है जो कि ऑरेंज कलर की है।

जो लाइट्स लगी हुई हैं और इसमें जो है छह खिड़कियां दिख रही है और जो कि येलो कलर की है और लाइट्स भी --

यहां पे मुझे स्कूटीज दिख रही हैं और जिसका एक का कलर है ब्लैक और दूसरी का है रेड और ब्लू और व्हाइ--

यहाँ पे मुझे जो है यहाँ ट्रोफीस दिख रही हैगोल्डन कलर में।

ये मुझे एक होटल दिख रहा हैऔर यहाँ पे टेबल मुझे वाइट कलर का दिख रहा है।

और यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप है।

यहाँ पे मुझे तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

व्हाईट कलर का जैकेट पहेना हुआ हैं और ऊपर जो हैं टोपी पहनी हुई हैं।

यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो हैखड़े हुए हैं।

और मैक्सिमम ने जो हैवाइट कलर का --

टी शर्ट पहना हुआ है और जो बैक ग्राउंड में है ग्रे कलर की कुछ दीवार है और--

ये एक ब्लू कलर की मुझे कुर्सी दिखाई दे रही हैऔर इसके सामने जो हैवाइट कलर का कुछ --

यहां पे जो है इधर-उधर--

इधर-उधर जो है बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं।

ये मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारी चीजें जो हैरखी हुई है।

यहां पे एक आदमी जो है।

वाइट वोर्ड दिख रहा हैऔर यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है डेस्क लगे हुए हैं।

मूर्ति दिखाई दे रही हैऔर जो कि गोल्डन कलर की है और इसके पीछे जो है।

बहुत सारे पेड़ है हरे कलर के।

पीके पॉइंट लिखा है एक में एक में जो है क्यूट गर्ल लिखा है।

ये मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा हैजिसकी एक साइड की दीवार जो हैग्रीन कलर की है और इसमें--

एक फोटो लगा हुआ हैऔर एक यहां पे लाइट भी लगी हुई है।

यहां की जो चेयर है वो ब्लैक कलर की है और टेबल पर जो है--

और यहाँ पे जो हैलाइट्स भी लगी हुई है।